जिसमें मुझे एक बैलून्स दिख रहे है यै वाइट और रेड कलर के जिसकी डेकोरेशन बहुत जायदा अच्छी है।

जोकि एक डैम के पास खड़ा है किसी किसी डैम के पास खड़ा है और उसके नीचे --

और ये पंडित का कलर है येल्लो कलर की इसने धोती पहन रखी --

हरे कलर के बहुत सारे पेड़ का समहू दिख रहा हैं।

और वो बहुत दुरो तक फैला हुआ है।

चोकलेटी कलर का दिख रहा हैं।

दूर दूर में मुझे पेड़ ही पेड़ दिख रहे है और बीच में मुझे एक इंसान दिख रहा है।

अलग - अलग कलर और अलग - अलग पैटर्न के प्रोवाइड किये गये है कपड़े यहाँ पर --